स्कूटी का दुकान है और यहां पे एक ड्रिल लगा हुआ है जो कि उसका कलर --

सीढ़ी है जिसका कलर है उ ऊं ग्रे है और और यहां पे एक बच्ची बैठी हुई है ओ उस लाइट --

सेवेन नाइंटी फोर टू सिक्स सेवेंटी एट यहां पे बॉर्डर अं बैनर बना हुआ है जोकि बैनर का कलर रेड है।

और यहाँ पे एक ब्लैक पंखा लटका हुआ है और यहाँ पे एक और ब्लैक पंखा है दो-दो ब्लैक पंखा लटका हुआ है।

और यहां पे एक चेयर भी रखा गया है जिसका कलर ब्लू है ब्लैक है और यहां पे तीन लाइट्स चार लाइट्स लगाई गई हैं।

में दिवाल बनाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश लेटरिंग भी है और ये इंग्लिश लेटरिंग का कलर व्हाईट है।

यहाँ पे अ दो बंदे काम कर रहे हैं और यह एक हठौड़ी है हाथ में एक अ पेचकस से ठोक रहा।

एक मम बाइक खड़ी है जो ब्लैक कलर की है वहां पे बाइक के बगल में एक लड़का खड़ा है जो व्हाइट टी शर्ट अ व्हाइट शर्ट पहना हुआ है और यहां पे चाय --

यहां पे एक गार्डेन का फोटो है और यहां पे एक कूड़ेदान रख गया है जोकि उसका कलर ब्ल्यू है और यहां--

पीला चंदन किया ग किया हुआ है और ये एक रेड का मुनका भी किया गया और हाथ में रेड क--

यहाँ पे एक नाव है जो नाव पर बैठ के आदमी नाव चला रहा है और नाव कठ काठ का है और यहाँ पे--

यहां पे एक अह होटल है और यहां पे--

चल रहा है और वो व्हाइट स्कूटी पे है और वो ग्रे कलर का शर्ट टी शर्ट पहना हुआ है और उसमें--

तीन पंखे लगाए गए हैं और दो ए_सी लगाए गए हैं और यहां पे बहुत से सारे बॉल है बल्ब है जो यहां पे एक पीला पर्दा भी लगाया गया है।